ये गराउंड है फील्ड है फील्ड में हरा हरा घा घास है।

गाड़ी लगी हुई है चारों बगल वृक्ष है पौधा है।

और यह म मिट्टी का है सारा घर और तीन लेडिस है।

दोकान में लंबू है लंबू का मुह बांधा हुआ है धनिया का पत्ता है मिर्च है केला है।